यह चित्र एक घर के अदर का नजर आ रहा है घर की दीवारो का रग हल्का पीला नजर आ रहा है दीवार के ऊपर काफी खिड़कियाँ लगी नजर आ रही है।

यह चित्र एक पहाड़ो का नज़र आ रहा है पहाड़ो के ऊपर कुछ पत्थर रखे नज़र आ रहे है सामने की और एक तालाब भी नज़र आ रहा है।

यह ईमारत काफी पुराणी नज़र आ रही है व पीछे की और हरे भरे वृक्ष लगे नज़र आ रहे है ऊपर आसमान में सफेद बादल छाये है।

चित्र एक ईमारत का नज़र आ रहा है ईमारत काफी पुरानी नज़र आ रही है।

ईमारत का रंग हरा नज़र आ रहा है ईमारत के आगे एक पक्की सड़क नज़र आ रही है।

यह चित्र एक कार्यालय के बाहर का नज़र आ रहा है जहा ऊपर की और एक सफ़ेद रंग के बोर्ड के ऊपर ऑफिस ओफ असिस्टेंट इंजिनियर लिखा नज़र आ रहा है।

सामने की और एक सफेद रंग का मेज नज़र आ रहा है पीछे दीवारों का रंग हल्का पीला है।

येह चित्र एक पार्क का नज़र आ रहा हे जहा बच्चो के लिए कई प्रकार के झूले लगे नज़र आ रहे हे बच्चे झूलो पर झूलते हुए नज़र आ रहे है वेह सामने की और हरे रंग के बेंच बेठने के लिए दिख रहे है।

यह चित्र एक पुस्तकों की दुकान का नज़र आ रहा है जहां सामने की औरभूरे रंग के बक्से में कई तरह की किताबे रखी हुई नज़र आ रही है।

यह चित्र एक शादी के कार्यक्रम का नज़र आ रहा है शादी के कार्यक्रम के मुख्य द्वार पर अनेक रंगों के फूलो से सजावट की हुई नज़र आ रही है।